इस फोटो में एक स्विमिंग पूल दिखाया जा रहा है जिसके उउ ऊपर में कुछ चेयर वगैरह लगे हुए हैं एक टेबल लगा हुआ है जो ब्लैक कलर का है।

वगैरा देखें जा रहे हैं कुछ बाउंड्री लाइन की हुई उसके--

इस फोटो में हमें एक ब्रिज टाइप का दिख रहा हैं जिसमें बहुत सा--

इस फोटो में हमें एक लकड़ी का ब्रिज दिख रहा है जिसमें बहुत सा--

और ऊपर में कुछ छोटे-छोटे घास वगैरा देखे जा रहे हैं एक आदमी फोन --

जो ये मिरर वगैरा देखे जा रहे हैं ऊपर में एक साउंड बॉक्स ल अ रखा हुआ है।

साउंड सर्कल का सर्कल बना हुआ है एक बॉक्स --

इस फोटो में हमें एक अ बहुत बड़ा ग्राउंड तरह का देखा जा रहा है।

इस फोटो में हमें एक शॉप दिख रहा है जो कपड़ों का शॉप है बा अंदर--

कार वगैरह दिख रहे हैं कुछ बड़े-बड़े घर वगैरह दिख रहे हैं कुछ--

इस फोटो में हमें एक अ मैदान टाइप का दिख रहा है जिसमें बहुत छोटे-छोटे हरे हरे घास वगैरह दिख रहे हैं।

कुछ आदमी वगैरह बैठे हुए हैं जो वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं एक टेबल टाइप का दिख रहा है जो ग्रीन कलर का है।

और कुछ बड़े-बड़े पेड़ पौधे देखे जा रहे हैं पीछे एक--

बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एस_बी_आई लिखा हुआ है उसके बगल में एक वाइट कलर का बैनर लगा हुआ है।

फोटो में हमें एक जे_के टायर का शॉप दिख रहा है जिसमें ब बाहर में बहुत सारे ब्लैक कलर के टायर्स वगैरह रखें हुए--

अ और दो तकिया दिखा जा रहा हैं जो चेयर के ऊपर रखा हुआ ए--

इस फोटो में हमें एक घर दिख रहा है जो वाइट कलर का है।

दीप लगा हुआ है जो कुछ रेड या कुछ ऑरेंज कलर के हैं कुछ व्हाइ--

लगा हुआ है जो टोन कलर का हुआ है जो वाइट और ब्लैक कल--

इस फोटो अ में एक पार्क टाइप का दिख रहा है जिसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे देखे जा रहे--

आदमी वगैरह देखे जा रहे हैं कुछ लाइट के अअ पोल वगैरह देखे जा रहे हैं।

येलो और ऑरेंज हैं कुछ का आसमानी है एक लोहे का--

वाइट कलर का ये पीछे कुछ घर वगैरह देखे जा रहे हैं कुछ बड़े बड़े पेड़ वगैरह देखे जा रहे हैं एक--

और देखा जा रहा है जो हरे कलर का है कुछ पर्टल वगैरह देखे जा रहे हैं कुछ साथ साथ --

कपड़े वहां रखे गए हैं कुछ भैंस वगैरह देखे जा रहे हैं।

अअ वाइट कलर के च चद्दर वगैरह बिछे हुए--

और एक साउंड बॉक्स देखा जा रहा है कुछ बैनर वगैरह लगे हुए हैं उसके बगल में एक आ--

इस फोटो में हमें एक पंजाब नेशनल बैंक दिख रहा है जिसमें बाहर में--

इस फोटो में हमें कुछ लड़की कुछ जेंट्स वगैरह योगा करते हुए दिख रहे हैं कुछ का ड्रेस रेड कलर का है कुछ ब्लू कलर का कुछ व्हाइट का है।

अ तालाब टाइप का देखा जाए जिसमें पानी भरा हुआ है कुछ घर वगैरह देखे जा रहे हैं।

छोटे कैरी बैग वगैरह में एक अ पेड़ लगा हुआ है कैरी बैग का कल--

देखे जा रहे हैं कुछ बांस के अअ चाला वगैरह बना हुआ है।

अ कुछ ए_सी के डब्बे देखे जा रहे हैं उसके बगल में एक बड़ा सा घर दिख रहा है।

इस फोटो में हमें एक बहुत बड़ा रोड टाइप का दिख रहा है जिसमें वाइट लाइन व दिए हुए है।